जिसके ऊपर लिखा हुआ है महाकांची धाबा एंड फॅमिली रेस्टोरेंट ।

यह एक जिम है और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है एडिशनल जिम क्लब ।

यह बच्चो का वाटर पार्क है जहाँ पे स्लाइडिंग --

यह एक मेज है और इस मेज के ऊपर में दो प्लेट में बिरयानी पड़ी हुई है।

और इसके से से सामने में एक आदमी जो कुर्ता पेजमा पहना है उसने स्वेटर और शाल ओढ़ रखी है।

यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

कुछ परदे एक कलर के तो कुछ मल्टी कलर के भी हैं।

यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहोत सारे मजदूर इकट्ठा हैं।

और खुदाई करने के लिए क्रेन भी है जो सामने दिखाई दे रहा है बगल में सफ़ेद रंग की एक इमारत भी है।